यह एक बहुत ही अच्छा और सुंदर सा हमें मॉल दिखाया गया है जो कि यह मॉल बहुत ही अच्छा और सुंदर है दिखने में।

जो कि यह ग्राउन्ड दिखने में काफी सुंदर और हरा-भरा है और बगल में घर भी दिख रहे हैं जो कि यह घर का है।

जो कि दिखने में काफी सुंदर और मस्त है और यहाँ देखने घूमने के लिए बहोत दूर-दूर से लोग आते हैं।

यह एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर से हमें रेलवे का पटरी दिखाया गया है।